यहाँ पर एक लड़की चाय बना रही है व यहाँ पर एक पानी का जार व लाइट लगा हुआ है।

पीछे बैकग्राउंड में है पेड़ पौधे हैं।

सामान रखा गया है पानी का बोतल रखा गया है।

यह एक बहुत ही साफ सफाई का जगह दिख रहा है और पीछे एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है व पीछे दो तीन पौधे भी लगाए गए है व एक खंभा है वह --

यहां एक मूर्ति है जहां पर लोग सुबह सुबह चार बजे पूजा अर्चना कर रहे हैं जैसे कि हम देख पा रहे है।

जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहां पर--

जिसमें से एक ए_टी_एम कार्ड व एक सारथी का पोस्टर है।

यहां पे एक सफाई का बहोत ही अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है।

चैनल बना हुआ है जिसमें रेड कलर या फिर ब्लू कलर का लगाया गया है।

यह एक शॉपिंग मॉल है यहां पे बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारे टॉयज रखे गए हैं।

यहां पर एक गाड़ी खड़ा हुआ है जहां पे टैक्सी लिखा हुआ है।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक या हार्डवेयर का दुकान है।

पर पीछे एक बहोत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जैसे कि हम देख पा रहे हैं यह एक बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां पे रात का समय हुवा हैं व यहां पे बहोत बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

चार कुर्सीयां वह दो टेबल रखे हुए हैं यहां पे पाच से अधिक लोग हैं।